और सामने एक खंबा है एक ट्रांसमीटर है एक स्विफ्ट गाड़ी है सामने की तरफ से एक और ट्रक --

रेलीग बा- बाहर की तरफ दिवार ऊपर से एक दम कलर वंडरफुल कलर किया हुआ है।